और ये जो जगह है ये दिन का समय है पीछे बहोत ही सुन्दर और झाड़ियां पेड़ पौधे बरे छोटे सारे लगाये गए हैं और यहाँ पे कोई इंसान नजर नही आ रहा ये तस्वीर काफी सारी ऊपर से ली गयी है तो नीचे का जो व्यूव है काफी--

फिर क्लीन और अ प्रिजेव् की हुई जगह लगती है ऐसा लगता है ये ख़ास करके बच्चों के लिए या फिर बड़ो लोगों के जो बाहर के तरफ घुमने के लिए आते हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह बनाई गयी है।

खाली और क्लीन लग रहा है। देखने में और ऐसा लग रहा है की यहाँ पे नयी नयी पेंटिंग हुई क्योकि पेंटिंग अभी भी बोहोत ही क्लीन और न्यू टाइप की लग रही और देखने में काफी खूबसूरत भी लग रही। यहाँ पे कोई इंसान --

के रखा गया है ये घर के अन्दर का है इसको केदारनाथ की धाम बनाई गई है और ये काफी खूबसूरत लग रही है देखने में इसको एक टेबल के ऊपर रखा गया है टेबल जो है वो काफी चमक रही है लाइटे भी जल रही है।

जनरल स्टोर की तसवीर लगती हैं और ये दिन के समय के बावजूद भी यहाँ पे बहोत सारा लाइटे जल रही हैं और काफी कंजेस्टेड लग रही हैं यहाँ पे अलमारियाँ नज़र आ रही हैं जो अलमारी हैं वो सब वाईट कलर की हैं और इसमें बहोत सुन्दर सुन्दर--